तस्वीर में देख पा रहे होगे यह तस्वीर एक जिम खाने की है यहाँ पे अलग अलग डम्बलस रखे हुए है छोटे और मोटे।

मेकॅनिकल सॉफ्टवेर टाइप की कोंई ब्रांच है।

इनका छोटा सा ऑफिस है कोंई आदमी यहाँ पे झाड़ू मार रहा है साफ़ कर --